दो बाइक भी रखी दिखाई दे रही है बगल में बहुत सारा पानी भी दिखाई दे रहा है।

अगल बगल में बहोत बड़े बड़े से पौधे भी लगे दिख पेड़ पौधे भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे दुआ भी दिखाई दे रही है नीचे कच्ची सड़क तली दिखाई दे रही।

यह यह पिक्चर एक इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा के शोरूम की है।

बगल में ऑफिस भी बना दिखाई दे रहा है एक कुलर भी रखा दिखाई दे रहा है।

तीन खिड़कियां नजर आ रही हैं और तीन लोग भी खड़े दिखाई दे रहे हैं।